हमें यहां पर दिख रही है एक महजित टाइप सी बिल्डिंग --

हम यहां पर देख पा रहे हैं जो मीटिंग हॉल है।

यहां पर पेड़ भी लगे हुए हैं और लाइट भी लगी हुई है।

और कुछ बांस पड़े हुए हैं लकड़ी और एक नांदा भी रखा--

पहने हुए हैं और लाइट भी जल रही है।

एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं छोटे-छोटे से और एक बाइक भी खड़ी हुई है।

हमें यहां पर दिख रहा है एक बड़ा सा गार्डन --

बैठने के लिए और टेबल ये झूला है।

यहां पर हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोग योगासन कर रहे हैं।

यह एक दुकान है जहां पर एक फ्रिज रखी हुई है जिसमें--

हम यहां पर देख पा रहे हैं कि यह एक नर्सरी का दुकान है जहां पौधे तैयार किए जाते हैं।